और यहां पर मुझे दरवाजा खिड़की दिख रही है। कुछ सामान भी रखा हुआ वह वाइट कलर का दिखाई दे रहा है। यहां ब्लैक--

एक तो येल्लो कलर है ग्रीन कलर पिंक कलर --

और ब्लू कलर भी दिखाई दे रहे हैं यहां पर पिंक कलर के फ्लावर सजाके रखे हुए है नीचे कुछ सामान भी रखा हुआ है।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

यहां पे लोहे का कुछ ऊपर रखा हुआ है और यहां पे झंझरी वगैरह भी लग रही हैं।